जो भी है ये बहुत ही अच्छे है और ये पानी बहुत साफ है इसमे लोग स्नान भी करते हैं।

और इस पंडाल में अच्छे से बहुत ही अच्छे से फूल माला लगा दिया गया है जो की बहोत ही अच्छे लग रहे हैं।

और ये पंडाल को काफी ज्यादा अच्छे से और ये रास्ता है गेट का बहुत अच्छे से --